मंदिर का गेट दिखाई दे रहा है खिड़कियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं और बहोत सारे पेड़ लगे दिखाई दे रहे हैं।

ये सीनरी में मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है रोड के आजु बाजु हरी हरी घास दिखाई दे रही है।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

मुझे एक नाव दिखाई दे रही है सामने पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और नाव में बहोत सारे आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं दो नाव दिखाई दे रही हैं।

उसका मोबाइल नंबर लिखा हुआ है और डॉक्टर जे ए वाय बी डबल ई बी आई एस ऐश टी आई बस्ती व दांत छपे हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ जो बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है और बहोत सारे आदमी क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं ग्राउंड में हरी हरी घास लगी हुई है।

और उसमें बहोत सारी खिड़कियां लगी हुई दिखाई दे रही हैं और सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं और ब्लैक कलर का गेट दिखाई दे रहा है।

दिखाई दे रहा है बहुत सारे तार दिखाई दे रहे हैं और छत की रेलिंग दिखाई दे रही है दो गेट दिखाई--

वन विभाग चैक पोस्ट आशारोड़ी के सामने एक घर बना हुआ दिखाई दे रहा है और --

इस इमेज में मुझे एक सामुदायिक स्वस्थ्य केंद्र दिखाई दे रहा है आजु बाजु गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया और नीचे शटर लगे हुए दिखाई दे रहे हैं मीटर दिखाई दे रहा है और एक मोटर साइकल दिखाई दे रही एक स्कूटी दिखाई दे रही है एक आदमी हेलमेट लगाए हुए है।